ये सभी बंदे हैं सभी बंदे खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर सड़क पर बहुत लोग खड़े हैं। यहाँ पर बस की छत के ऊपर बहुत लोग हैं।

एक बंदा फोन में कुछ कर रहा नजर आ रहा है।